जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक मोबाइल की दुकान है जिस पर लाल --

और पानी की बोतलें रखी हुई हैं और यहां पर बहुत अच्छा--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक बहुत बड़ी कांच की बिल्डिंग है और यहां पर--

और अंदर कुछ कारें भी है और दो गुलदस्ते भी है काले कलर के।

मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारी किश्तियां हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने सुरमे कलर की टी शर्ट और मास्क लगाया हुआ है।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

यहां पर एक सफेद कलर की कार खड़ी हुई है और यहां पर बहुत सारे थैले हैं।

और यहां पर कुछ कपड़े सूखने के लिए टंगे हुए है।

और यहां पर कुछ दरख्त भी है और दो लोग --

यहां पर इस ब्रिज पर बहुत सारी गाड़ियां हैं और बहुत सारे लोग हैं।

और अंदर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और यहां पर कुछ दरख्त भी है।

और यहां पर कुछ पोस्टर भी लगे हुए जिन पर चार लोगों की तस्वीरें भी हैं।

एक लाइटे भी लगी हुई है और एक आदमी है।

इसमे से एक पर हेलमेट लगा हुआ है काले कलर का।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर इस दुकान में बहोत सारे हेडफोंस है और स्पीकर भी है।

इसमें कुछ लोग पेट्रोल डलाने के लिए आए हुए है।

और यहां पर एक छतरी भी लगी हुई है और कुछ दरख्त भी है।

और यहां पर एक कार है जो सफेद कलर की है।

और बकेट है जो नीले कलर की है।

इसने ब्लू और पीले कलर की टीशर्ट पहनी हुई है।

पीले कलर के फूल है लाल कलर के गुलाबी कलर के भी फू--

और कुछ घर वरी है और लाइट के खंभे भी है।

डस्टबिन भी है जो पीले कलर का है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक बोहोत अच्छा सजावट है।

पिंक कलर का है और यहां स्मर फूल गुलाबी कलर के और हरे कलर के और पीले कलर के है।

और यहां पर एक टेबल भी है चॉकलेटी कलर का जिस पर गुलदस्ता --

यहां पर तीन यू_पी_आई भी रखे हुए है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक मैदान है जिसमें कुछ दरख्त है।

और चॉकलेटी कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

यहां पर एक बड़ा सा गेट है ब्लू कलर का।

और यहां पर ऊपर लिखा हुआ है कुछ हिंदी में।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक पेट्रोल पंप है जिस पर चार लोग हैं।

और यहां पर एक स्कूटी भी खरी है और एक गुलदस्ता भी है।

और एक घर भी है जो सफेद कलर की है।

इस पर फूल लगे हुए हैं लाल कलर के सफेद कलर के और गुलाबी कलर के।

और यहाँ पे सफेद कलर की एक मूर्ति भी है।

यह एक मेडिकल है जिसके अंदर बहुत सारी दवाइये हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक बर्थडे मनाया जा रहा है।

लोग भी है और यहां पर कुर्सियां पर्पल कलर के रखे हुए है और टेबल सफेद कलर के है।

जिस पर एक ब्रिज बना हुआ है।

और एक बहुत बड़ा पहाड़ भी है कुछ दरख्त--